देखिए यहां बैट बॉल का बहुत बड़ा दुकान है इसमें बैट बॉल बैट बॉल सिर्फ बैट बॉल बहुत बढ़िया-बढ़िया बैट बॉल है देखने में खिलाड़ी सब का लाईन लगा हुआ है।

एक मुखडा है मुखडा खड़ा है जो के पैसा लटकाए हुआ है शर्ट पहना हुआ है या कपड़ा पहनी हुई है ऐब दुकान के आगे खडा है।